हमें यहाँ पे कुछ बाल्टिया रखी हुई दिखाई दे रही है जो की काफी नीली कलर की है यहाँ पर कुछ केरिट भी रखी हुई है जो कि लाल कलर की है यहाँ पर कुछ बहुत सारी ट्रे रखी हुई है जो की हरे कलर की है यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर जैसे कि हमें बहुत जूट्स दिखाई दे रहा है बहुत ही गड्डी सड़क है यहाँ पर मैदान भी है यहाँ पर गाड़ी रखने का बहुत सारी जी पे रखी हुई है टिन सेट भी है जो की हरी कलर का है।

हमें यहाँ पर एक चाय वाला दिख रहा है जो कि चाय बेच रहा है चाय रोहन चार चाय सेंटर है चाय कॉफी लिखा हुआ है कुछ पीली कुछ सफ़ेद कलर से लिखा हुआ है जो की बहुत अच्छा है।

यहाँ हमें बहुत सड़के दिखाई दे रही हैं बहुत सारा लगा हुआ है जिसमे बहुत सारे रिक्शे रखे हुए जो कि देखने में रंग बिरंगे लग रहे हैं एक रक्शा पीली कलर का हैं जिसमे कांच लगी हुई हैं हरी कलर का भी हैं आगे शीशा लगा हुआ है जो की--

हमें यहाँ पर बहुत ही कपड़े दिखाई दे रहे है जो की हरे भरे कलर के है यहाँ पर ब्लैक कलर का एक सूट भी है और नीले कलर का भी बहुत सुन्दर दिखायी दे रहा हैं।

बहोत सारे डिब्बे भी रखे हुए है जोकी बहोत ही अच्छे लग रहे है यहां पर टाइल्स भी लगी हुई है जोकी बहोत ही बड़े बड़े है और बहोत ही सफेद कलर की दिख--

यहां पे कुछ गेट भी लगे हुवे है और यह पर जाली भी लगी हुई है एक जाली बोहोत सुंदर है उस पर बोहोत ही पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जोकि काफी सुंदर लग रहे है।